गुलाबी कलर की पत्तिया है ये नज़ारा एक पारक का लग रहा है जहाँ पे एक चेयर पड़ी है बैठने के लिए।

ये एक जिम एरिया है जिसमें जिम्स के मशीन हैं एक्सइरसाइज़ करने की।

जीन्स पहनी एक ने वाइट कलर की सर्ट और नीले रंग की पजामी और एक ने फ्रॉक पहनी है नीले रंग की गुलाबी कलर की--

आसमान साफ़ है।

बाइक खड़ी हुई है ऑटो खड़ा हुआ है ये मस्जीद के एक बहार एक औरत खड़ी हुई है।

सरस्वती बुक डिपो--